हरियाली और नीला आसमान और टाटा मोटर्स के शोरूम के आगे दो तीन गाड़ियां पार्किंग में है।

ये एक पार्लर का बाहर का फोटो है जहां पेबाहर पे दो बच्चे हैं लोग पार्लर पे बाल काट रहे हैं दो बाइक है और दो साइकिल है।

जिसमें बड़े-बड़े खिड़की है और एक वाइट टेबल है और अगर हम दीवार पे देखेंगे तो हमें तीन बड़े-बड़े मेडल दिखेंगे--

इसमें बहुत सारे फोटो लगे हुए हैंदीवार पे--

ये कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है जहां पे जे_सी_ वी खुदाई कर रहे हैं और यहां पे चार लोग है तीन लोग आगे--

पीछे एक लोग बैठे हुए हैं उस मैदान पे--

ये एक छोटा सा गो डाउन है जहां पे टी_वी रखा हुआ है और इसके ऊपर एक फैन ले है और इसमें भि हम देख सकते हैं आई एम निकॉन लिखा हुआ है और यहां पे सभी टी_वी के भक्से रखे हुए हैं।

ये फोटो रात में लिया गया हैएक होटल का जिसका नाम होटल नाथ प्योर वेज है वाइट कलर का बिल्डिंग है जिसके आगे एक गाय का मूर्ति है।

यहां पे दुर्गा पूजा हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैंबहुत सारे लोग देखने को आए हैंदुर्गा मूर्ति और इसमें गणेश जी का मूर्ति कार्तिक जी का मूर्ति दुर्गा माता शेर असुर हर सभी का मूर्ति हैयहां पे आप देख सकते हैं।

ये एक चाय दुकान है जिसका नाम हैरोहन चाय स्टोर और हम इस फोटो में देख सकते हैं एक साइकिल है डस्टबिन है।

ये कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है जिसके चारों तरफ हरियाली है।

ये एक बड़ा सा मैदान का फोटो है जिसके पीछे बड़ा सा एक बिल्डिंग है और चारों तरफ पैर है और उस मैदान में छोटे-छोटे पौधे भी हैं।

ये एक महल के बाहर का फोटो है वाइट कलर का महल है इसके आगे--

ये एक दिन का लिया गया फोटो है एक गाय का तबीला है जिसमें गाय का रंग काला और सफेद है और इस गाय को एक ग्रीन कलर के डअ रस्सी से बंदा हुआ है।

ये एक शोरूम है जिसका नाम चेन्नई सिल्क है बड़ा सा बिल्डिंग है इसके आगे एक बड़ा सा रस्ता है जिसमें हमें एक व्यक्ति स्कूटर चलाते हुए दिख रहा है और येलो कलर का एक ऑटो भी दिख रहा है।

ये दिन में फोटो लिया गया है ये एक स्विमिंग पूल का फोटो है जिसके चारों तरफ पेर बड़े-बड़े हैं और इस पूल के साइड पे छोटे-छोटे पौधे भी है।

और दो-तीन लैंप भी है जिसमें रात के वक्त लाइट जलती है।

ये एक फल का दुकान है जहां पर हमें कई सारे फल रखे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें से एप्पल ज्यादातर है ऑरेंजेस है बनाना है ग्रेप्स है।

ये एक मछली मार्केट का फोटो है जहां पे तीन लोग मछली बेच रहे हैं बड़ा छोटा मीडियम --

इस फोटो में दो बैनर्स है जिसमें लिखा हुआ है फ्री रूरल हेल्थ कैंप --